जो कि लोगों के आ। यह ब्रिज लोगों के आने और जाने की सुविधा के लिए बनी है।

तो जैसा कि हम यह फोटो में देख पा रहे हैं कि यह एक बहुत ही खुला मैदान है जहाँ पर बीच में एक --

तो जैसा कि हम यह तस्वीर में देख पा रहे हैं कि यह घर से बाहर की ओर ली गई फोटो है। यहाँ पर एक साइकिल खड़ी है।